यहाँ पे कुछ कपड़े रखे हुए है जो एक एक जैसे एक साइड में बहोत सारे कलर के है ऐसे ब्लू है ब्राउन है।

यहाँ पे वो बुक्स भी अवेलेबल है।

हम अ लेग अ लेग्स के एक्सरसाइज करने के लिए वहाँ पे एक अम चेयर्स रखे हुए हैं।

किसी छोटा-छोटा सा डी.जे. मिलाया गया है जिसके--